ये एक वर्क्शाप है वर्क्शाप मे वैल्डिंग कि मशीन भी है यहां पर लोग--

के बाहर दो बाइक खड़ी है और बाहर बहोत सारे पेड़ है।